यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर सूरज की रोशनी कितनी ज्यादा चमक रही है और नीचे जो है एक कार दिख रहा है वाइट कलर का।

यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक नदी जैसा है जहाँ पर बहुत सारे हंस हैं जो एक दूसरे के साथ एक साथ उड़ रहें हैं।